इसमें काफी लोग आ सकते हैं। यहाँ पर हम अपने कोई स्कूल का प्रोग्राम भी कर सकते है। यहाँ पे कोई मीटिंग भी कर सकते है। हम जानते है कि बड़े बड़े होटलों में ऐसे वॉल मिल जाते है।

क्यों कि हम जानते है अक्सर ऐसी जगहों पर कार पार्किंग होती है और यहाँ पर हम लोग अपनी कार को खड़ा करके हैं।